यहाँ पर कुछ बिल्डिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है इस ग्राउंड में कुछ छोटे-छोटे धुआ भी उग रही है कुछ वहां पर अ सूखे पत्ते भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर अ नीला-नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है यहां पर अ पेड़ों के बीच में टावर बना हुआ है यहां पर कुछ मिट्टी भी दिखाई दे रही हैं।

अ आस-पास उसके काफी सारी मिट्टी-मिट्टी दिखाई दे रही है वो मशीन से म मकान में कुछ गढ्ढा करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर काफी सारे औजार भी रखे हुए नजर आ रहे हैं काफी सारी रेत भी पड़ी हुई है यहाँ।